इस तस्वीर में हमें फंक्शन वाली जगह दिखाई दे रही --

इस तस्वीर में हमें शोरूम के बाहर का नजारा दिखाई दे रहा है।

इमारत के ऊपर बहोत सारे बोर्ड लगे हुए भी नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें पुरानी दुकान दिखाई दे रही है।

तस्वीर में हमें एक भरत एजेंसी का ऑफिस दिखाई दे रहा है।

कैफै की छत पर बोहोत सुंदर-सुंदर लाइट भी दिखाई दे रही है।

इसपर कुछ तकिया और सामान रखा हुआ भी नजर आ रहा है।

साइड में छोटा सा कमरा भी दिख रहा है जो की संतरे रंग का है।

इस तस्वीर में हमें एक किराने की दुकान दिखाई दे रही है।

पेट्रोल पम्प के आसपास पेड़ लगे हुए भी नजर आ रहे हैं।